बोर्ड लगा हुआ है जिसपे इंटरनेशनल मार्शल आर्ट स्कूल इंडिया लिखा हुआ है।

वॉल है जो लाल रंग कि है जिसपे एक कैलेंडर टंगा हुआ है।

एक सड़क है सड़क के पास में पीले रंग का बेरियर कर रखा है जिस पे प्लीज स्टॉप लिखा हुआ है।

डलिया रखी हुई है जिसमें बहुत सारे केला और फल रखे हुए हैं।

हॉल मे एक कार खड़ी हुई है जिसमें शीशा लगे हुए है नीचे टाइल्स लगे हुए--

दरवाजा लगा हुआ है जो कांच का बना है बेड पे एक तौलिया पड़ी है।